सरिया भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग मजदूर खड़े हैं एक आदमी छत पर है ।

और यहाँ टिकट काटने वाला काउंटर है इसको चंडोल कहते हैं।

काफी लेडीज भी बैठी हुई हैं चेयर्स भी हैं देखने में सुन्दर लग रहा है चेयर - टेबल भी हैं ।

और यहाँ पे उर्मिला भी लिखा है बोलेरो कार भी है।

यहाँ मेट बिछाया हुआ है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है लाइटे लगी हुई है गेट है।

कई कलर के बस है दो मंजीला घर दिखाई दे रहा है | दुकान है छोटे-छोटे लेडीज हैंजेंट्स भी है ।

ये स्टेट बैंक है दो मंजिला ईमारत है तीन मंजिला ईमारत दिखाई दे रहा है और इसके नीचे दुकान है एक्सेस का भी।